इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

वीर में मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ पराठे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर मैं मुझे कुछ दुकान दिखा--

इस तस्वीर में मुझे दो बाइक दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बिजली की तार दिखाई दे र--

तस्वीर में मुझे खुद स्कूटी दी--

स्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे इंद्रा आई_वी_एफ सेंटर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे माधवनगर रोड स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ ऑटो दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे विजय सोता रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ झूले दिखाई दे--

तस्वीर में मुझे एक लाइट दिखाई दे रही है।

यहां मुझे कुछ माइक दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ दिख--